ये एक चित्र है चित्र में एक दरवाजा दिख रहा है।

दो तीन लड़के खड़े हुए हैं।

एक आदमी सफेद रंग की टी_शर्ट पहना है।

चित्र एक आइसक्रीम पार्लर का है।